कुछ बिजली केखंबे लगाए है बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दो जीप खड़े हैं।

यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं और कुछ बिजली के --

बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है इसमें मच्छी भी रहती हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं।

सुवाई का पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है कुछ के तारमाल लग रहे हैं।

यहां पर मैं देख सकता हूं बहुत सारी जनता जा रही है और मंदिर में मंदिर में--

और बहुत बड़ा घर बन रहा है सफेद कलर का पुता है और एक--

यहां पर मैं देख सकता हूं सान गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है।

घर बन रहा है सफेद कलर का पुतरा है कछु बन रहा है आजू-बाजू में पेड़ पौधे लगे हैं।

यहां पर मैं देख सकता हूं सुनार की दुकान है चूड़ी मुड़ी सोना चैन मेन बेंच रहा है।

चांदी की चैन कुछ सोने की चैन कुछ चांदी की चैन और इसका घर सफेद कलर में पुतरा है कुछ हरा कलर का लिखा है।

जहां पर मैं देख सकता हूं बहुत सारे गमले रखे हैं दोहरे कलर पीले कलर लाल कलर और कुछ उनमें पे--

बहुत सारा लिकार लिकार है गमलों के ऊपर--

बहुत सारी जीपें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मैं देख सकता हूं कुछ गेट वगैरह मगैरा लग रहे हैं कुछ पेड़ मेल लग रहे हैं।

यहां पर मैं देख सकता हूं एक बहुत बड़ा घर बन रहा है सफेद कलर का--

यहां पर मैं देख यहां पर मैं देख सकता हूं एक महिला खड़ी है महिला खड़ी हैं तीन चार--

हां पर मैं देख सकता हूं एक बहुत बड़ा घर बन रहा है और कुछ मोड़ मोड़ भी लग रहे हैं।

कुछ मूड खड़ी है ओर सफेद कलर सफेद कलर का घर बन रहा है मूर्ति में खड़ी है।

कुछ बिजली के तार मार लग रहा हैं आजू बाजू में कुछ पेड़ पौधे लगा रहे हैं।

यहाँ पर मैं देख सकता हूं कुछ सो रहे हैं कुछ थाड़े हैं कुछ आड़े पड़े हैं और एक लाल--

कुछ धहा सा इट्रिया है कुछ गैस पड़े हैं और कुछ लाल लाल--